क्या हो रहा है? बहुत ही बढ़िया मतलब अच्छा लग रहा है देखने में आप समझ सकते हैं बहुत बढ़िया है क्या चीज हैं यहाँ पर देखो--

और देख सकते हैयहाँ पर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है आप देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से काम चल रहा हैं।

--और ये देखिये यहाँ पर क्या हो रहा है सनराइज पब्लिक स्कूल --

अरे ये क्या है? चटटान है सामने जो तो कुछ समझ नहीं को चटटान बना दी--।

और देखिये न कैसे चित्र कैसे काम कर रहे है बहुत बढ़िया देख लीजिए आप-- ।

काफी अच्छा लग रहा है देखने में आप समझ सकते है मेरी भावनाओं को क्या कहना चाहता हूँ बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर का आप फोटो खिचवाए एक नंबर आएगी यहाँ पर फोटो --

अभी आप देखने से कितना शानदार लग रहा है सुपर लग रहा है अभी देख सकते है आप कितना शानदार लग रहा है।